ये बच्चा पूरा उल्टा हुआ है।

इसमें टेडी बियर कार्स बोज कुछ फेविकोल की--

इन बूटों में हरियाली छाई हुई--

ये बच्चे योगा कर--

इसमें बच्चे नहा रहे हैं।

इन प्लेयर्स के हाथ में रैकेट्स पकड़े हुए हैं।

लिए छोड़ा गया है कार का कलर रेड है।